मिलते हैं आप आकर खरीद सकते हैं।

यहाँ यह एक दुकान में लगता है बिकी बिक रही है।

भी किया जाता है अअ पराशकर मार्केट भी है।

अथी नाटक-उटक होने वाला है इसलिए ये बच्चे उन --

और यहाँ गाडी बिकने के लिए भी है।

यहाँ पर कुछ मुफ्त में बांटती है वैसे यह एक यहाँ पर एक ग्रिल है लगा हुआ जिसमें --